इस तस्वीर में बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है।

यह कार्यालय लेसलीगंज जिले में है।

यहां पे बहुत सारी कुर्सियां और टेबल रखी हुई हैं।

यहां पर बलून से सजावट की हुई है।

यहाँ पर एक बाइक भी लगा हुआ है। बाइक का रंग ब्लू कलर है।

यहां बहुत सारे लोहे के काम किए हुए हैं।

यहां पे बगल में बहुत सारे बिल्डिंग भी है।

यह किसी ब्लॉक का तस्वीर लग रहा है जहां बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग है।

यहां पे एक आदमी भी जा रहा है और उसके पीछे एक औरत भी जा रही है।

जिन दुकानों में काउंटर लगा हुआ है।

यह किसी लैब जांच का तस्वीर है जहां पे बहोत सारे लोग खड़े हैं।

यहां पर सामने एक डॉक्टर बैठी हुई है।

यहां बहुत सारी दवाइयां भी दिख रही हैं।

उस चेयर के ऊपर दो हेलमेट भी रखे हुए हैं।

यहां पर पंखे भी लगाए हुए हैं।

यह शेड एक लोहे से बना हुआ है।

दुकान पे एक उजला कलर का गद्दा भी लगाया हुआ है।

यहां पे कुल पांच लोग चढ़ रहे हैं।

जहां पे बहुत सारे कार पड़ी हुई है।

यह एक रेस्टोरेंट का तस्वीर है।